यह एक चार मंजिल प्रशासनिक भवन है जो ब्राउन कलर का है और फ्रोजी कलर की इसकी खिड़कियां हैं| खिड़कियां बहोत बड़ी बड़ी हैं| साइकिल खड़ी है बाइक खड़ी है।

और बुलडोजर का आगे का पार्ट दिख रहा है| वो बुलडोजर ईट फैला रहा है| आधे में घास लगी हुई है आधे में कचड़ा हो रहा --

यहाँ एक मस्जिद दिख रही है जो व्हाइट कलर की है और ग्रीन कलर से डेकोरेट किया गया है एक बेगानार जा रही है एक बेगानार लेफ्ट साइड आ रही है।

ये एक डीजे वाला है । जिसका राउंड इसमे बूफर भी लगे हुए है और माइक भी लगा हुआ है ।

यहाँ नदी दिख रही है। ऊपर रेलिंग दिख रहे हैं। नदी के लम्बे-लम्बे से लकड़ियां लगी हुई हैं। लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं। उनकी परछाइयाँ नीचे दिख रहीं हैं।

यह एक शॉप है जहाँ बच्चों को सामान मिलता है बेबी के डॉल्स मिल रहे हैं बार्बी डॉल्स मिल रही है वे बच्चों के आवाज करने वाले टॉयज मिल रहे हैं।

लकड़ियाँ मिल रही हैं बैट्स मिल रहे हैं बुक्स मिल रही हैं छोटी-छोटी बुक्स मिल रही हैं टाइप टाइप्स कि बॉल बार्बी डॉल्स मिल रही हैं।

आधे में बेला दिख रही है। बहुत मोटी दीवार दिख रही है। एक दो गड्डे दिख रहे हैं। सामने से निकलने वाली दिख रही है। एक डोरी दिख रही है और खंडर टाइप का दिख रहा है। आधा बहुत गन्दा हो रहा है।

और भी बहुत सारी चीजे हैं। तोलने की मशीन दिख रही है शटर दिख रही है वाइट कलर का दीवाल है। चॉकलेट्स मिल रही हैं और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं।